और पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

वह नीचे की तरफ कुछ छोटे छोटे पत्थर और एक पानी--

और यहां पे पीले कलर की छत दिखाई दे रही है लकड़ी की और सामने एक--

मने पीले कलर कि कुर्सियां रखी हुई है और साइडों में कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

ये छत टीन की है और बहुत सारे लकड़ी के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

और एक सफेद कलर की बाउंड्री के अंदर रखे हुए हैं और एक ट्यूबलाइट सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

और एक ही एक जिराफ बीच में मूर्ति दिखाई दे रही हैं और--

और पीछे की तरफ मुन्ना लिखा हुआ है ब्लैक कलर के बॉक्स पे।

नीचे एक सरदार जी की पगड़ी सहित मूर्ति बनी हुई हैं।

और यहां पे सफेद कलर के चुने से लाइनें खींची हुई हैं।

और एक कैप रखा हुआ है ब्लैक कलर का और आदमी ने महेनु कलर कि टी शर्ट पहनी हुई है।

साइड में एक पीले कलर का पेंट लगा हुआ घर दिखाई दे रहा है।

यहां साइड में एक पीले कलर का शटर और तुम्हारे पीले कलर की दीवार दिखाई दे--

इचमें एक थम पर ओनर और नाइन लिखा हुआ है।

यह एक घुड़ घुड़ का रहने का एक घर है।

नीचे बहुत सारे आदमी बैठे हैं और एक लैपटॉप में कुछ भजन चल रहे है।

यहां पे लकड़ी का एक चीज दिखाई दे रही है।

जिन का रंग ऑरेंज और काला और विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों से लटके हुए हैं।

यहां पे कॉल्डिंग की और पानी की बोतले एक डेस्क में रखी हुई है और --

और कुछ पेड़ पौधे और नीले रंग का आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ दो आदमी बिना कपड़ों के सफेद कलर की कपड़ा लपेटे हाथ में--

और पोस्ट ऑफिस के अंदर कुछ कट्टे रखे हुए हैं।

यह एक शादी का फंक्शन है जिसपे सफेद कलर में सिल्वर लीफ लिखा हुआ है।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

तरबूज और ऑरेंज रखे हुए हैं और उ--

पीछे की तरफ टीन दिखाई दे रही है।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

दो आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने ला गले में लाल कलर का कुछ लटका हुआ है। अरे द एक आदमी ने हाथ में फाइल ली हुई है। एक आदमी फाइल को देख रहा है।

ऊपर बहुत सारी लाइटे जली हुई है और कुछ लटका हुआ है।

र सामने रेड कलर का एक पोस्टर लगा हुआ है।

एक बिना लिसी पुती दिवाल पर डॉक्टर एस के लिखा हुआ है।

इंग्लिश में एम_आर_एफ लिखा हुआ है और हिंदी में अधिकृत विक्रेता लिखा हुआ है।

यहां पर पानी से भरा एक तालाब दिखाई दे रहा है।